यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे सामने एक इमेज दिखाई दे रही है जोकि लकड़ी से बने हुए एक ढाँचे की है। इस ढाँचे को रेड कलर की पट्टी से सराउंड किया गया है।

गार्डन को बहुत अच्छी तरीके से मेन्टेन किया हुआ है यहां पर ग्रीन कलर की बैठने की स्टूल भी बनी हुई हैं और आस-पास काफी बड़े पेड़ हैं।

इस पार्क में कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिनकी कटाई बहुत अच्छे से हुई है। इस पार्क में झंडे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे एक कार भी पार्क है।

जोकि देखने में काफी अच्छी है। इसका कलर पीला और लाल है। राइट साइड काफी पेड़ लगे हुए हैं। बिल्डिंग के बाहर काफी सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

इस महल का कलर सफेद है और ऊपर से इसका कलर निकल चुका है। इसके आसपास बहुत सारे पेड़ और क्यारियाँ बनी हुई हैं।

यहाँ हमारे सामने एक फोटो दिखाई दे रही है जो की दो महलों की है एक महल मिट्टी कलर का है जिस के ऊपर का हिस्सा सफ़ेद कलर से पुता हुआ है।

इस किले के ऊपर कुछ लिखावट भी की गयी है। पीले कलर के ऊपर काले कलर की लिखावट नीचे नाव भी रखी हुई है।

यहाँ पर अलग - अलग प्रकार के गमले पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं और पीछे बड़े - बड़े झाड़ भी तो एक दूसरे से साईज़ में देखने में अलग --